कृष्णा और राधा जी के प्रतिमा है इसमें दोनों के सर में मुकुट लगाया हुआ है।

बहुत सारी लाइट जल रही--

फोटो में हम लोग हरी भरी चाय पत्ती देख सकते हैं।

एक बुजुर्ग लाउडस्पीकर और हरमुनियम के साथ में है।

दो पलंग है जिसके ऊपर सफेद और काले रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है।

इस फोटो में हम लोग एक दुकान को देख सकते है जिसमे सब्जी और फलफूल बिक्री किया जाता है।

इसके बगल में हम लोग सामग्री देख सकते हैं मिर्च टमाटर प्याज--

वॉल का कलर ग्रीन है और उसके नीचे जो है रेड कलर लगाया हुआ है।

खिड़की और हमलोग कुछ चेयर और टेबल को भी देख सकते हैं।

हम लोग दिया जलाने स्टैंड को भी देख सकते हैं।

नया लाइन सब ड्रॉ किया गया है।

इसमें बहुत सारे जूते सैंडल्स है बहुत प्रकार के डिजाइन दिए गए इसमें।

सभी एक ही कंपनी के--

इस फोटो में हम लोग एक पाव भाजी बनाने वाले आदमी को देख सकते हैं जो कि अपना ट्राली लेकर पाव भाजी बना रहा है।

और इसके ऊपर हम लोग एक क्यू_आर कोड भी देख सकते हैं के पीछे हम लोग कुछ बड़े बड़े मॉल को भी देख सकते हैं।

बाहर में हम लोग एक सीढ़ी देख सकते हैं।

उसके आगे हम लोग कुछ पेड़ को भी देख सकते हैं।

इसे बाउंड्री किया गया है।

उसके दरवाजे के सामने कुछ पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं।

कुछ मोबाइल रियलमी कंपनी के हैं।